बहुत सारी हरी - हरी ढांचे जैसी कुचली दिखाई दे रही है जो देखने मे बहुत अच्छा लग रहा है सामने एक व्यक्ति खड़ा है।

कुछ झूले एक जैसी लगी हुई है ये डरवारी पे बहोत अच्छा ही अ ड्राइंग बनाया गया है यह रात्रि का समय है।

एक बड़ी सी बस दिखाई दे रही है एण्ड अगल-बगल मे बहोत सारे पेड़-पोधे देखे जा सकते है ऊपर नीला आकाश है सामने एक स्कुटर खड़ी है।

जहाँ पे एक बहुत बड़ा- सा बोर्ड जैसा कुछ लगा हुआ है जिसके ऊपर इसके बारे में कुछ लिखा हुआ हैं।